और यहां पर पीछे में बहुत बड़ा एक सीढ़ी भी है यहां पर बहुत सारे करकटे लगी हुई है।

और यहां पर बहुत सारी टेबल और कुर्सियां है जिसका कलर भूरा है।

यहां पर ऊपर बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं बहुत सारी फुलें हैं।

यहां पर बहुत सारी गन शूटिंग चल रही है यहां पर बहोत सारे चेयर भी हैं।

यहां पर अंदर में बहुत सारी करकटें लगाई हुई हैं एक करकट का कलर हरा है।

बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

मे एक बहोत बड़ा पार्क है जिसमें बहुत सारे स्लोपिंग और बहुत सारे खेलने वाली चीज भी है।

यहां पर बहुत सारी पंखे भी हैं यहां पर बहुत सारी बैंच से लगी हुई है जिसका कलर उजला है ।

यहां पर एक कुलर भी है जिसका कलर उजला है और रूम का कलर भी उजला है यहां पर बहुत सारी रैके बनाई हुई है।

यहां पर बहुत सारी तकिया भी रखी हुई है नीचे में बहुत सारी टाइल्से भी है।

यहां पर ऊपर बहुत सारे पंखे और लाइटे भी हैं यहां पर एक बहुत बड़ा सीसा भी है यहां पर ऐ_सी भी हैं।

यहां पर नीचे में बहुत सारे फील्ड भी है यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ और पौधे भी हैं।

यहां पर एक बाइक पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका चप्पल का कलर ब्लू है।

रेको शीशे लगे हुए है और यहां पर बहुत सारी सामाने रखी हुई है।

सामने मे एक बहोत बड़ा ब्रिज है जिसका रंग उजला और काला है।

यहां पर बहोत सारे पर्दे बांधे हुए हैं जिसका कलर पिंक है।